नमस्कार gchemtable में features and color schemes के इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
gchemtable elemental window और color schemes elemental window and color schemes
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu लिनक्स os version 1204
gchempaint version 01210
gchemtable version 01210
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आप एलीमेन्ट्स की पिरीऑडिक टेबल और gchempaint के साथ परिचित होने चाहिए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
अब gchemtable application के बारे में सीखते हैं
gchemtable gchempaint के utility सॉफ्टवेयर की तरह संस्थापित की जा सकती है
synaptic package manager उपयोग करके
gchemtable रासायनिक एलीमेन्ट्स की पिरीऑडिक table application है
यह एलीमेन्ट्स के बारे में विज्ञान सम्बन्धी जानकारी देता है
यह पिरीआडिक table को भिन्न color schemes के साथ दर्शाता है
gchemtable खोलने के लिए dash home पर click करें
प्रदर्शित search bar में type करें gchemtable
periodic table of the elements icon पर click करें
periodic table of the elements window खुलती है
window बेस्ड applications के जैसे ही gchemtable window menubar रखती है
menubar वो सभी commands रखती है जिसकी आपको gchemtable के साथ काम करने के लिए ज़रुरत है
यह एलीमेन्ट्स की पिरीऑडिक table है यहाँ आप element buttons देख सकते हैं
element का name प्राप्त करने के लिए cursor को element पर रखें
table में buttons के लिए उपयोग हुए colors एलीमेन्ट्स के आम colors हैं
यह table modern पिरीऑडिक table की प्रतिरूप है
अब elemental window के बारे में सीखते हैं
इसको प्रदर्शित करने के लिए पिरीऑडिक table पर किसी element button पर click करें
मैं carbon c पर click करुँगी
carbon की elemental window खुलती है
elemental window चार side tabs रखती है
main main electronic properties electronic properties
रेडीआई radii thermodynamics thermodynamics
मैं प्रत्येक टैब के बारे में एकएक करके समझाऊंगी
default रूप से main टैब सलेक्ट किया हुआ है
यह element का symbol रखती है
atomic number
atomic weight और
electronic कॉन्फ़िगरेशन
यह lang और name name शीर्षकों के साथ एक table रखती है
table अनेक भाषाओँ में carbon के name दर्शाती है
आगे electronic properties टैब पर click करें
यह टैब निम्न के बारे में जानकारी दर्शाती है
pauling electronegativity value
ionization energies
पहली दूसरी और तीसरी ionization energies mj per mol में हैं
electronic affinities kj per mol में हैं
दायीं तरफ सम्बंधित show curve buttons देखे जा सकते हैं
chart देखने के लिए show curve button पर click करें
यह electronegativity बनाम atomic number z का chart है मैं chart बंद करुँगी
radii टैब पर click करें
यह टैब दर्शाती है covalent
van der waals और metallic radii values सभी pm में हैं
pm मतलब pico metre बराबर 10 की घात12 metre
चूँकि carbon nonmetal है यह metallic radius value नहीं रखती है
मैं carbon window बंद करुँगी
अब वापस एलीमेन्ट्स के पिरीऑडिक table window पर जाते हैं
अब sodium na button पर click करें
radii टैब पर click करें
metallic radii value प्रदर्शित होती है
radii टैब ionic radii की table रखती है
यह table columns के रूप में ion c n और value रखती है
अब इस table पर नीचे scroll करते हैं
यह table उन भिन्न ionic states की जानकारी देती है जिसमे sodium मौजूद है
इसका coordination number cn और * ionic radii value pm में हैं
एलीमेन्ट्स chromium मैंगनीज़ iron cobalt nickel और copper अधिक संख्या में complexes form करने की प्रवृत्ति रखते हैं
अब iron fe button पर click करें
इसकी elemental window खुलती है
radii टैब पर click करें
ionic radii table spin named एक अतिरिक्त column रखती है
spin column iron iron के complex फॉर्म करने की प्रवृति के बारे में अनुमान देता है
यहाँ high का मतलब spin मुक्त complexes है जहाँ electrons अयुग्मित हैं
low का मतलब spin पेयर्ड complexes जहाँ electrons युग्मित हैं
मैं iron fe elemental window बंद करुँगी
complex formation के बारे में अधिक जानकारी इस link पर उपलब्ध है
दोबारा carbon की elemental window पर click करें
thermodynamics टैब पर click करें
यह टैब carbon का melting point और boiling point प्रदर्शित करती है
show curve button को अपने आप जाँचें
मैं carbon elemental window को बंद करुँगी
अब color schemes पर जाते हैं
view menu पर जाएँ और color schemes select करें
एक menu color schemes की सूची के साथ खुलता है
no colors पर click करें
सारे element buttons grey में बदल जाते हैं
color schemes पर click करें और physical states select करें
एक नयी पिरीऑडिक table blue color के elements buttons के साथ खुलती है
कुछ बटन्स को black छोड़कर
सबसे ऊपर आप न्यूनतम value के साथ temperature k: scale slider देख सकते हैं
नीचे आप solidblue liquidgreen और gasred के colors देख सकते हैं
zero degree kelvin पर सारे एलीमेन्ट्स solid state में हैं
इसीलिए यह blue color में दिखाई देते हैं
अब temperature बढ़ाने के लिए slider को खींचें
ध्यान दें कि एलीमेन्ट्स अपनी physical state बदल देते हैं
blue color green liquid और red gas colors के द्वारा blue जाता है
6010 degree kelvin पर सारे एलीमेन्ट्स गैसीय state में बदल जाते हैं
सारे buttons red color में बदल जाते हैं
कुछ एलीमेन्ट्स black background में दिखाई देते हैं
उस temperature पर उनकी state अज्ञात होती है
आगे family select करते हैं
select family drop down button दिखता है
drop down सूची में अनेकों families उनके सम्बंधित colors के साथ होती हैं
by default all सलेक्ट किया हुआ है
एलीमेन्ट्स की प्रत्येक family एक विशेष family color में दिखती है
drop down सूची पर click करें और metalloids select करें
metalloids green family background color में प्रदर्शित होते हैं
बाकी सारे एलीमेन्ट्स black background में प्रदर्शित होते हैं
color schemes पर वापस जाएँ electronegativity color स्कीम्स select करें
red color के एलीमेन्ट्स न्यूनतम electronegativity values रखते हैं
blue color के एलीमेन्ट्स उच्चतम electronegativity values रखते हैं
red से blue color में धीरेधीरे बदलाव होता है
बीच वाली electronegativity values pink color के elements की होती हैं
अगर database में कोई data उपलब्ध नहीं है तो एलीमेन्ट्स black background रखेंगे
अब block select करें
प्रत्येक block के एलीमेन्ट्स आवंटित block color के साथ प्रदर्शित होते हैं
s blockblue
p blockरेडिश brown
d blockgreen और
f blockpurple
अब सारांशित करें कि हमने क्या सीखा
इस tutorial में हमने सीखा
elemental windows के विवरण के बारे में
निम्न की color schemes1 physical state
2 family 3 electronegativity और
4 block
एक नियत कार्य की तरह
जाँचें cobalt nickel copper और अन्य की elemental windows
भिन्न family color schemes
atomic radius color स्कीम्स
इस url पर उपलब्ध video देखें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
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद